इस पिक्चर में मुझे एक येलो कलर का बिल्डिंग दिख रहा है।

यह फोटो में मुझे बहोत सारे पंखा दिख रहा है।

एक ए_सी भी दीवार में लगा हुआ है।

बिस्तर के सामने एक टेबल भी दिख रहा है।

झरने के कोने में छोटा छोटा ग्रास भी निकला हुआ है।

झरने का पानी भी काफी सफा है।

के सामने एक टेबल भी रखा हुआ है।

आगे एक ग्रीन और वाइट कलर का बड़ा सा छतरी भी दिख रहा है।

बहुत सारा एप्पल भी रखा हुआ है।

यह तस्वीर में मुझे एक हार्डवेयर का दुकान दिख रहा है।

एक सफेद कलर के टूल के ऊपर वेट नापने वाला मशीन भी रखा है।

एक कंप्यूटर भी काउंटर के ऊपर रखा हुआ है।

टायर के ऊपर में एक घरी भी लगा हुआ है।

सामने बहुत सारे पेड़ दिख रहा है।

के ऊपर में एक बड़ा सा पोस्टर भी लगा हुआ है।

बास्केट के ऊपर बहुत सारा टमाटर रखा हुआ है।

इस फोटो में मुझे बहोत सारे स्टील ग्लास दिख रहा है जो स्टील से बना हुआ है।

इस सभी ग्लास को बहोत अच्छे से सजाया गया है एक के ऊपर एक।

इस किचन के अंदर बहोत सारा लकड़ी भी सुख कर रखा हुआ है।

सामने दो गाड़ी भी दिख रहा है एक गाड़ी लाल कलर का है और एक गाड़ी ग्रीन कलर का है।

जमीन में ब्लू कलर का कारपेट बिछाया हुआ है।

प्लेट के ऊपर कुछ पराठा भी रखा हुआ है।

एक इंसान के कंधे में एक रुमाल भी रखा हुआ है।